मैदान के आखिरी में एक दीवार--

उसके हाथ में काला धागा है।

दुकान के अंदर दो पंखे चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ लोग स्लाइड करते नजर आ रहे है।

इसके चारों तरफ हरा भरा पार्क भी है।

बहुत सारी बिल्डिंगे भी नजर आ रही है।

दो लोग पैदल रोड कि तरफ--

इसमें बहोत खूबसूरत सी बत्तियां भी लगी हुई हैं।

इसमें बहोत अच्छी सी सजावट कर रखी है।